पुल गया हुआ है जो उसके ऊपर खम्भे गड़े हुए है सफेद रंग की पुल बना हुआ है सफेद रंग का काफी चौड़ा नन्दी है बगल में पत्थर पड़े हुए है जो भूरे रंग की है।

यहां पे बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है जो कत्थे रंग का है अगल बगल पेड़ पौधे हरि भरी पत्तियां है कुछ भूरे पेड़ है छोटा सा गार्डन है जो हरे रंग की घास उगी हुई है कुछ छोटे छोटे पेड़ है हरे रंग की पत्ती है।